ये बहुत बड़ा डांस एकेडेमी है।

यह एक मछली मार्केट है यहाँ पे बहुत सारे ताजे-ताजे मछलियाँ मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मछलियाँ लेने के लिए आए हैं बहुत सारे लोग मछलियाँ बेचने के लिए बैठे हुए हैं यह एक बहुत बड़ा दूकान है।

यह देखने में बहुत अच्छा और बड़ा है यहाँ पे बहुत सारे घास दिखाई दे रहे यह यहाँ पे एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

रोड के साइड से पुल के नीचे देख रहे हैं यहाँ पे देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

खड़ी हो के बात कर रहे हैं यहाँ पे देखने में काफी सुंदर और --